पीछे सफ़ेद और नीला आकाश दिख रहा है।

इस चित्र में एक बड़ा भवन दिख रहा है इसपे खिड़किया दिख रही हैं | मिट्टी से बना रास्ता दिख रहा है| एक तरफ --